ऊपर आसमान साफ है और नीला है।

दुकान पर गुब्बारो से सजावट की गई है।

इस तस्वीर में एक समूह योग अभ्यास करते हुए दिख रहा है।

ये लोग झुके हुए हैं आगे और अपने हाथों से अपने पैरों को छू रहे हैं।

सामने हमें एक कैफे दिख रहा है कैफे के बाहर एक आदमी खड़ा है जिसका फेस ब्लर है कैफे के अंदर तीन आदमी हैं।

बोर्ड के आगे एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है।

के बाहर एक हरा रंग का डस्टबीन है और आगे कुछ झाड़ियां हैं।

इनमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम करने के उपकरण हैं।

जैसे की ट्रेडमिल मे वेट लिफ्टिंग मशीने और ।

ये ऊपर में ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसपे सुखदेओ पैलेस लिखा हुआ है।

यह तस्वीर एक मॉल की है।

सामने रोड पे खड़ी एक लाल रंग की कार दिख रही है।

आगे-पीछे एक दीवार है जिसमें स्वच्छ भारत एडवटीसमेंट बना हुआ है।

ऊपर बहुत सारे तार हैं और एक बड़ा सा पेड़ है नीला खुला आसमान है।

वुड के उ बीच में बुक वर्ड्स लिखा हुआ है।

जैसे की दरवाजे चटाइयां गलीचे बाथरूम मैट --

कई छात्र सैनिक वर्दी पहने हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सुंदर दो रंगों वाला फूल दिखाई दे रहा हैं।

फूल हरे पत्तों के साथ एक पौधे पर लगा हुआ है।

बैलगाड़ी हरे रंग की है और इसमें कई डब्बे लगे हुए हैं।